सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

वहां एक आदमी दिखाई दे रहा है।

सामने एक लड़का चलता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं सामने काउंटर है।

कुर्सियां प्लास्टिक की दिखाई दे रही है।